सामने की तरफ एक ड्रम रखा हुआ है जो कि नीले कलर का है।

साइड में एक बड़ा पेड़ है जीस पर फूल आ रहे हैं और पीछे कोई पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं।

एक दुकान के अंदर बहोत सारी मालाएं लगी हुई है और सामने की तरफ एक दो व्यक्ति खड़े हैं।

और कुछ पेड़ दिखाए गए हैं और साइडो में ईंटों की बाउंड्री है।

और बिजली के खंभे दिखाए गए हैं और बिजली के तार दिखाए गए हैं।

दरवाजे खुले हुए है व लकड़ी के बने हुए है सामने एक बोर्ड है जिसके अंदर कुछ पेंटिंग्स रखी हुई है।

सामने एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर सॉलिटेअर फार्मस लिखा हुआ है और नीचे कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर लाइट जल रही हैं और कुछ दीवारो पर पेंटिंग्स लगी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

ऊपर की तरफ एक छोटा सा झूमर लटका हुआ है और सामने फायर एग्जिबुटर का सिलेंडर लगा हुआ है।